टाइप्स में लिखा हुआ है बगल में एक--

थ्री चिअर्स और एक टेबल दिखाई पड़ रहें हैं।

और कुछ चलते हुए लड़के नजर आ रहे हैं।

एक बच्चा ब्लैक कलर के कपड़े में नजर--

और अगल बगल हरे भरे पेड़ पौधे

और ब्राउन कलर है और दरवाजा बंद है।

यहां पर दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं एक जेंट्स और एक लेडिज

ब्लैक और लाल कलर के लहंगा पहना हुआ है और एक सफेद जूता पहेना हुआ है और जूते के ठीक नीचे एक--